डेन्टिंग पेंटिंग के बाद यह हाउस यह फ्लैट ये बहोत बढ़िया लगेगा।

न मजा आता है पसीना बहाने में और --

ये किसी ऑफिस के आगे का नज़ारा है। कितने बढ़िया-बढ़िया प पेड़ लगे हुये हैं ये।

सही है गाइज ये पीछे इसके लड़की के पीछे लड़का है यहाँ पे ।

देखिए गाइस एक सलून का नजारा है पीछे से --

चर्च में बैठे हुए हैं इनकी फोटो कितनी बढ़िया है पीछे का डिजाइन बहुत बढ़िया बनाया जैसे कोई प्रोग्राम --

देखिए कितने अच्छे यहाँ मुझे लग रहा है। कोई फेस्टिवल हो रहा है।

देखिए गाइस यहाँ पर ये इनके लिंटर वगैरह गिर गया था शायद।